यहाँ पे एक बहुत बड़ा पुतड़ा है। उस के --

बहुत सारे लंबे लंबे पेड़ है कोकोनट --

आडा झुका हुआ एक झाड़ है उधर भी छोटा झाड है अंदर नारियाल के झाड़ है एक लम्बा सा झाड़ है नारियाल का।

और आसमान है खुला झाडे है।

यह कपड़े की दुकान है कपड़े का पुतला है एक--

बच्चा यहाँ पे बैठा हुआ है और खिड़की है उसके पास--

यह एक बहुत बड़ा मस्जिद है एक इंसान जा रहा है यहाँ से और जैसे कपड़े पहके बहुत बड़ा और वहाँ पे बहुत सारी डिज़ाइन की हुई है मस्जिद के ऊपर। वहाँ पे एक बोर्ड है।